यह एक खेल के मैदान की तस्वीर है जहां पे बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं।

लाइट जल चुकी है पीछे चांद दिखाई दे रहा है मैदान के पीछे घने पेड़ हैं।

ईटो के ऊचे ऊचे भंडार लगाए गए है ईटो को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है बिच में ईट भटी है जहा पे ईटो को सेका जाता है।

सड़क के बीचों बीच एक सफेद रंग की बस खड़ी है।

बनारसी पान भंडार में नाश्ता मिलता है उन्होंने अपना ब्रैक फस्ट मेनू बाहर लगा रखा है।

सड़क में दो ट्रक भी खड़े हैं और कुछ वर्कर काम भी कर रहे हैं।

वर्कस ने ओरेंज कलर और ग्रीन कलर की जैकेट पेहनी हुई है।

दुकान के सामने सफ़ेद रंग की डेस्क लगी हुई है उसी के बगल में एक--

पहाड़ो के पेड़ बहुत हरे दिखई दे रहे हैं झील का पानी बोहोत साफ है झील के बीचो-बीच एक आदमी--

एक पत्थर पे बैठा हुआ है आदमी ने सफ़ेद रंग के कपडे पहने हुए है।

कुछ रंग सफेद कुछ का ग्रे कलर का है।

चदरे बिछी हुई है चदरों के ऊपर बैग रखे हुए है।

एक ऊपर की तरफ जाती है एक नीचे की तरफ आती है सीढ़ियों के नीचे हरे रंग का कॉर्पेट बिछाया गया है।

नीचे फर्श में सफेद और काले मार्बल का इस्तेमाल किया गया है।

सीढ़ीओ के सामने एक बच्चो के लिए नीले रंग की गाड़ी खड़ी करी गई--

घर के द्वार के बहार एक शू रैक रखा गया है शू रैक को भी फूलो से सजाया गया है एक बच्चा घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है।

उस सोफे के पीछे दूसरा एक सोफा रखा गया है जो की एल शेप की है दिवार पे कुछ पोस्टर लगाए गए हैं।

पीछे एक इमारत है जिसके ऊपर अभी कम चल रहा है।

ठेले के सामने एक गाड़ी खड़ी है गाड़ी के चारो तरफ कुछ लोग खड़े है ठेले के बगल में बैठने के लिए एक बेंच डली है.

गाड़ी के सामने एक दूसरी काली रंग की गाड़ी खड़ी है शाम का समय है स्ट्रीट लाईट जल रही है पेड़ काले से नज़र आ रहे --

बच्चों के लिए टेबल खाना खाने के लिए कुर्सी उपलब्ध है।

बैग के बगल में एकझोस्ट फैन पडा है एकझोस्ट के बगल में एक चप्पल पडी हुई है।